यह एक समुंद्र है मतलब पानी है यहाँ कबूतर ऊपर से पंछी-वछी पानी में रहते है औ --

यहाँ आप देख सकते हैं घर बनल बनने जा रही है ब धीरे-धीरे बन रहा है और काफी अच्छी ही बनेगी द --

पूरी अच्छी तरीके से लकरी लार और और मट्टी से बना रहें हैं और पेंट कर रहे हैं।

यह एक फोटो शॉप यहां कई प्रकार के फोटो सब बनाई जाती है।

और अंदर मे आदमी बैठे हुए है एक पीछे भी टेंपू है और यहां पे एक देख सकते हैं आदमी बैठा है और जिसका टकला दिखाई दे रहा है।